और दुकान में एक आदमी खड़ा हुआ है।

साइड में कुछ बोरियां भी पड़ी हैं।

नीचे कुछ चेयर्स लगी हुई है टेबल्स है सारे लोग बैठे--

अलग अलग देवताओं की फोटोस दिख रही हैं।

ये एक कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही--

साइड में कुछ एक छोटा सा घर भी दिख रहा है।

ये एक घर का कमरा है जहां पर दीवार पर एक एलइडी लगाई--

ये एक दुकान दिख रही है।